बोहोत सारे प्लेट दोस्तों ने लगाया साइड में और यह दो प्लेट बिरयानी --

ताकत रहती नहीं जो दवाई से बॉडी बनाते हैं ओ --

यह एक मेला है और मेले में बहोत सारे झूले लगे होते हैं। ये तो चकरी झूला है और घोड़े वाला भी झूला होता है। डांसिंग कार होता है।

यह एक पुराना दीवाल है जो कि बोहोत ही --

सारे साइकिल मिलते हैं। और यहाँ दो लड़के हैं जो कि साइकिल लेने के लिये --

छठ मांई को अर्ग दिया जाता है यानि की यहाँ पे पूजा किया जाता है। नदी तालाब पोखर झील कही पर जाके --